दिए गए पिक्चर मे हमे एक गराज नजर आ रहा है जहा पर हमे एक रेड कलर की कार नजर आ रही है जिसका बोनट खुला हुआ है।

दी गई पिक्चर में हमे यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ग्राउन्ड देखने को मिल रहा है जहाँ पर हमे बहुत सारे व्यक्ति दिख रहे है हमे यहाँ पर कुछ झंडे भी दिखाई दे रहे है कुछ एलेक्ट्रिसिटी पोल भी दिखाई दे रहे है हमे यहाँ पर--

बहुत ही खूबसूरत तरीके से हम यहाँ पर अ बहुत सारी व्यक्ति भी हमे दिख रहे हैं जो की इसका आनंद उठा रहे हैं।

दी गई पिक्चर में हमें यहाँ पर एक अ बहुत सारे लोग दिखाई दे रहें हैं जो की अ बैडमिंटन खेल रहें हैं। इनके ऊपर हम देख सकते हैं बहुत सारी लाइटिंग्स की गई है और ब्लू कलर के पत्रे लगाए गए हैं।

पिक्चर मे हमे एक बोहोत ही पुरानी बिल्डिंग नजर आ रही है।

और हमें बहुत सारे पेड़ पौधे भी देखने को मिल रहे हैं | यहाँ पर हमें एक घर भी दिखाया जा रहा है।